इस पिक्चर में हमें एक बड़ी सी मकान नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हमें बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हम हरे भरे घास और पेड़ों को देख सकते हैं।

दिखाई देने वाली तस्वीर में एक जंगल जैसा लग रहा है।

छवि में हमें बहुत सारी मनुष्य नजर आ रहे हैं।

इस पिक्चर में हम नदी के बीच एक आयलैंड को देख सकते हैं।

इस छवि में हमें एक महिला नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हम के बोतल को रखे हुए देख सकते हैं।

इस छवि में हमे अनेक प्रकार के झंडे नजर आ रहे है।

यह छवि में हमें लाइटें नजर आ रही हैं।

यह तस्वीर में हमें एक महिला खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस पिक्चर में हम एक खुले आसमान को देख सकते हैं।